चिप्स के पैकेट बहोत सारे सूप के पैकेट ।

स्वेटर दिखा रहा है व्हाइट कलर का जो कि बंद है ।

खि खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं सामने रेती पड़ी हुई हैं मिट्टी दिखाई दे रही है।

कुछ गुलाबी रंग के हैं कुछ बेसन के हैं कुछ मेवा मिष्ठान के हैं।

कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है एक काले रंग का वायर --